पिक में हमे दो बस दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है। रोड दिखाई दे रही है। इसमे परछाईं दिखाई दे रही है एक बॉय की जो फोटो खिंच रहा है।

इस पिक में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो डार्क पिंक और व्हाइट कलर की है और नीचे ग्रीन एन्ड ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है और यहाँ एक पोस्टर बना है।

सामने हाउस दिखाई दे रहे हैंविंडो दिखाई दे रहे हैंपेड़ दिखयी दे रहे हैं और छोटे पेड़ दिखाई दे हैंरोड दिखाई दे रही है रेता वाली जगह है।

और ब्लू एण्ड येलो कलर के स्टार से सजाया गया है। दो गमलें रखे हुए हैं। पीछे टेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ बक्सा रखा है औ बक्सा रख रेड कलर का कार्पेट बिछा --

दिखाई दे रहा है। टेबल रखा है। डस्टबिन का डब्बा रखा है। बहोत सारे सोफे रखे हैं। लाईटें लगी हैं। डोर दिखाई दे रहा है। घास वाली जगह है। ये रात का व्यू है।

इस पिक मे बुक शॉप दिखाई दे रही हैं साइड मे किराना स्टोर दिखाई दे रही है। बुक शॉप बोहोत सारे टंगे अंदर बुके दिखाई दे रही हैं। यहाँ टैटू लगे हैं स्टीकर टंगे हैं।

बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहीं यहाँ बड़े लोग फोटो खीच रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें हमे ऑफिस के अंदर का दिखाई दे रहा है जहा चेयर राखी है टेबल रखे है जेंट्स एंड लेडिस दिखाई दे रही है फेन देखाई दे रहा है यहाँ एक बोटल रखी है फ्रिज रखी है।